सामान बेचने का तरीका है यहां पर आधुनिक मशीनें उपलब्ध है।

जिसके सामने एक ट्रक जोकि पूरी तरीके से कवरअप है वह जा रहा है।

यह तस्वीर एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है। जहाँ पर एक बाइक वाले ने इसे लिया है। तथा यहाँ पर --

सोने चांदी के आभूषण बेचने वाले दुकान कि है।

यह दुकान सुनहरे कलर से बनी हुई है पारदर्शी दरवाजे उपस्थित है।

जिसका नाम क्रीम एंड स्टोन है।